मेरे सारे कार्टून के बॉक्स पर रखा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ--

मुझे इस तस्वीर में कई सारे लोग दिख रहा है।

बिल्डिंग भी है और खिड़कियां भी दिख रहा है।

टेबल के ऊपर एक पानी की बॉटल और कई सारे टिशू पेपर भी रखा हुआ है।

बस कई सारे लाइट बल्ब भीतर।

मुझे इस तस्वीर पे एक बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है।

आसपास कोई सारे तख्ते भी रखा हुआ है।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

कई सारे इलेक्ट्रिक वायर्स भी है।

और कई सारे फूल के गमले भी दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर में दुकान दिखाई दे रहा है।

दुकान के अंदर का यह सारे--

इस तस्वीर में कई सारे बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

सामने में एक गेट भी दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर में बेम्बु से बनाया हुआ कार्पेट बिछा कर दिखाई दे रहा है उसपे कई सारे--

एक ओर हॉटकेस रखा हुआ है। सामने में दो पानी के बोतल और चार ग्लास भी रखा हुआ है।

पत्ते भी दिख रहा है। ऊपर में सफेद कलर बादल भी दिख रहा है।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

मुझे इस तस्वीर में कई सारे औरतें दिखाई दे रहा है।